इस बैंक के आगे दो आदमी दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें कुछ शादी का प्रोग्राम --

चलते हुए नजर आ रहा है।

परती हुई दिखाई दे रही हूं।

जैसे कि ऑरेंज मैंगो --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

काम करते हुए नजर आ रही हैं।

एक जिम दिखाई दे रहा है।

जिसके बगैर हमे बहोत सारे गमले पड़े हुए नजर आ रहे है।

जो कि फोटो खिंचवा रहा है।

गिफ्ट शॉप नज़र आ रही है।